अच्छा हुआ तू मुझे यहां पर लेके आई --

पता नहीं चल रहा है ये किस चीज का पेड़ है --

मेरा भी मन है इसको छूने का कैसा --

केले के पत्तो पे रखा हुआ है। यहाँ --

तो मुझे ये गाड़ी बहुत पसंद आई ब्लू कलर की है ब्लू और ब्लैक इतनी अच्छी लग रही है ना --

अच्छा है मतलब कलर कितना प्यारा है मतलब सब कुछ इतना बढ़िया है।

लोग आते हैं घूमने के लिए तो खड़ी करते है।

ये वाव कलर कितना प्यारा है। यार ये कितना अच्छी डेकोरेट किया है।

इतना अच्छा लग रहा है सब ये सी से लाइट है यार इतना अच्छा लगता होगा ना यहां पर बैठ के कितना मन लगता होगा काफी लोग आते होंगे बैठने के लिए --

वो है यहाँ पे मतलब डांस सिखाया जाता है। मतलब लड़कियों को सिखाया जाता है। संगी संगीत वगेरा और बहोत अच्छा है। मतलब कलर भी कितना प्यारा है ना। देखो तस्बीर जो है बनी हुई वो कितनी --